कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे स्कूल में किसी चीज का समारोह दिखाई दे रहा--

एक बुध जी कि प्रतिमा हैं नीचे एक पत्थर रखा हुआ हैं एक दान पेटी रखी हुई हैं जिसमें ताला ताला ताला लगा हुआ हैं।